यहाँ एक भी स्टूडेंट नहीं है सिर्फ --

है वहाँ उसके ऊपर फिल्म का चित्र भी लगाया हुआ है कौन सा फिल्म लगा हुआ है।

इसे हम मूर्ति बोलते हैं और यह हमारी पूज्य देवी-देवता हैं।

पूरे पार्क को प्रकाशित किये हुवे है। यहाँ पे आप आयें जरूर घूमने |

हम लोग गए थे अभी देखने तो ऐसी ही है लोग कहते है लोग --

यहाँ पे सभी प्रकार के हरा सब्जी मिलती हैं।